खुला हुआ एक आदमी बैठा है टेबल के उपर व्हाइट कलर का एक डब्बा सा रखा हुआ है एक आदमी उधर कुछ--

यहाँ पे जैसा बिल्डिंग सा कुछ दिखाई दे रहा हैं व्हाइट कलर का बिल्डिंग सा कुछ दिखाई दे रहा हैं मस्जिद सा कुछ दिखाई दे रहा हैं मस्जिद के साइड में एक कोने में लगता है खंबा सा --

ये गुरुकृपा आयुर्वेदिक स्टोर है नीचे मे एक बाइक साइड में एक बाइक एक दुकान दिखाई दे रहा है एक दुकान सा कुछ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर दिखाई दे रहा --

इहा एक घर सा कुछ दिखाई दे रहा है उसके अंदर पेड़ लगा हुआ है तिरंगा सा कुछ--

ये सा कुछ है दिखाई दे रहा है उधर भी पेड़ दिखाई दे रहे है पीछे उसकी बिल्डिंग सा कुछ घर सा दिखाई दे रहा है साइड में इधर --

एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है है।

ये इधर कुछ सीढ़ियां सी कुछ बनी हुई है वो गाडी उतारने चढ़ाने का सीढ़ियां भी कुछ लगी हुई है।

एक महिला को उधर ही कुछ पहनाया गया है और साथ शादी का जोड़ा है ऐसा कुछ एक ने साड़ी पहनाया गया है महिला को--